नमस्कार overview of gchempaint के इस tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न सीखेंगे
इसकी सभी utility files के साथ gchempaint संस्थापित करना
उसके utility सॉफ्टवेयर्स और gchempaint का मेन्यू बार देखना
gchempaint यूज़र manual उपयोग करना
gchempaint के भिन्न utility सॉफ्टवेयर उपयोग करना
हम gchempaint और jmol application के बीच सम्बन्ध भी देखेंगे
gchempaint उपयोग करके बनाये गए अनेक structures पर एक निगाह डालना
इसके लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
ubuntu लिनक्स os version 1204
gchempaint version 01210
gchemcalc version 01210
gchem3d version 01210
gchemtable version 01210
jmol application version 1222
इस ट्यूटोरियल के अभ्यास के लिए आपको हाई स्कूल केमिस्ट्री का ज्ञान होना चाहिए और आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होगी
अब देखते हैं gchempaint क्या है
gchempaint gnome2 desktop के लिए 2d chemical structure editor है
इसमें gchemcalc gchem3d और gchemtable उसके utility विशेषताओं की तरह हैं
gchempaint सिर्फ लिनक्स os पर उपलब्ध है
gchempaint gnome chemistry utils में सम्मिलित है
gchempaint और इसकी सभी utility files synaptic package manager प्रयोग करके ubuntu लिनक्स os पर संस्थापित की जा सकती हैं
सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर पर अधिक जानकारी के लिए कृपया लिनक्स सीरीज़ पर हमारी वेबसाइट पर जाएँ
synaptic package manager window में निम्नलिखित utilities को जाँचें
gchempaint
libgcu0
gcuplugin
libgcudbg
gcubin
अब यूज़र manual पर आते हैं
user mannual संक्षिप्त में बताता है कि gchempaint और इसकी utilities को कैसे प्रयोग करते हैं
gchempaint निम्न link पर यूज़र manual उपलब्ध कराता है
gchempaint का menubar और इसकी सभी utilities ubuntu desktop menubar पर प्रदर्शित होंगी
यह gchempaint का tool box है
भिन्नभिन्न structures बनाने के लिए हम अनेक tools प्रयोग करेंगे
current element बदलने के लिए tool box में एक अंतनिर्हित periodic table है
यहाँ tools box में अनेक tools प्रयोग करके बनाये गए भिन्नभिन्न structures हैं
श्रृंखला के दौरान मैं समझाउंगी कि इन tools का प्रयोग करके अनेक structures कैसे बनाये जाते हैं
अब मैं gchempaint के उपयोगी सॉफ्टवेयर के बारे में बताउंगी
यह chemical calculator window है
search bar में मैं type करुँगी c3h8 और enter दबाएं
यह window propane का विवरण और isotopic pattern दिखाती है
यह gchem3d window है
यह gchempaint में बने 2d structures के 3d models दिखाती है
gchempaint के नए version में अणुओं का बेहतर 3d प्रस्तुतीकरण है
यह gchemtable window है
इसमें elements की periodic table और उनका क्रमिक प्रवाह है
gchempaint में एक और अनूठी विशेषता है
gchempaint में बनाये गए 2d structures jmol application में 3d structures की तरह देखे जा सकते हैं
structures को 3d में देखने के लिए gchempaint files mol format में सेव की जानी हैं
jmol application का एक संक्षिप्त परिचय
यह free और open source मॉलिक्यूलर व्यूअर है
chemical structures के 3 डाइमेंशनल models को देखने और बनाने में प्रयोग किया जाता है
proteins और मैक्रोमॉलिक्युल्स के secondary structures को देखने में प्रयोग किया जाता है
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी website पर jmol application श्रृंखला पर जाएँ
gchempaint श्रृंखला में हम रोमांचक विशेषतायें देखेंगे जैसे
templates और रेसिड्यूज़ प्रयोग करना
अणु और bonds बनाना
aromatic मॉलिक्यूलर structures
orbital overlap
resonance resonance structures
3d structures देखना
periodic table की प्रवर्ति देखना
इसको सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने सीखा
gchempaint के साथ इसकी सभी utility files संस्थापित करना
gchempaint का menubar और इसके सभी utility सॉफ्टवेयर्स देखना
gchempaint यूज़र manual प्रयोग करना
gchempaint के utility सॉफ्टवेयर्स प्रयोग करना
और gchempaint एवं jmol application के बीच सम्बन्ध के बारे में
हमने भिन्न structures पर भी निगाह डाली जो gchempaint में बनाये जा सकते हैं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
online test देने वालों को प्रमाणपत्र देते हैं